सामने खिड़की पे पर्दे टंगे हुए हैं।

नदी के बीच में एक ब्लैक कलर की नाव पड़ी हुई है।

पीछे की ओर सफेद कलर की खंबे पे लाइट जल रही है।

और यहां पे एक कैबरी का स फ्रीजर भी रखा हुआ है।

इसीलिए शटर के ऊपर काफी सारे फूल की माला लगी हुई है।